एक लड़का है जो कि जिम में बैठा हुआ है। जो एक शर्ट और लोअर पहना हुआ है।

जो पिंक कलर का ड्रेस पहनी है। एक अंकल हैं जोकि ऑरेंज कलर का ड्रेस पहने हैं।

लोटा है और विष्णु जी की फ् तस्वीर है।

और सारे औजार यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए कुछ मिरर दिख रहे --

यहाँ पर एक स्कूल प्लेस दिख रहा है जहां पर कि गर्ल्स स्कूल है शायद --

ऊपर कुछ खिड़कियां लगी हुई है नीचे तीन गाड़ियां है जिसमें की दो वाइट कलर की एक ब्लैक कलर की है।

पटरीरी है वो लड़की जो की पिंक कलर की है और सब --

एक शर्ट को मेकप कोट टाइप का टांगा हुआ है। एक आ भैया बैठे है जोकि एक चेयर पर बैठे है लोहे की चेयर है।

यहां पर बहोत सारी कारें शो हो रहीं हैं। एक दो तीन चार पांच छे है।